बहोत सारे सामान हैं नीचे में इनका प्राइस लिखा हुआ--

एक हॉस्पिटल का दृश्य लग रहा है जिसमे नर्स हैं डॉक्टर हैं।